इस पे टंकी भी लगाया गया--

यहां पे कई लोग बैठके पढ़ते रहते है कई लोग।

इसमें कई सारे ढेर बहुत ही सामाने रखी हुई हैं।

इस रूम में कई कुर्सियां बिछाई गई हैं पंखे भी लगाए गए--